दो पानीपुरी की दुकान भी दिख रही है एक आइसक्रीम की दुकान भी दिख रही है।

एक बस भी खरा हुआ नज़र आ रहा है बस का नम्बर है टू वन एफ़ जीरो वन टू वन --

बगल से एक सड़क भी दिखाई दे रही है जमीन पर कुछ पत्ते पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

झूले के ऊपर बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रही है हॉस्पिटल का नाम है इरीनी हॉस्पिटल --

इस चित्र में एक मंदिर नजर आ रही हैं मंदिर का नाम है वाल्मीकि मंदिर।

गेट के अन्दर चलते हुए कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है गेट के बाहर सड़क भी दिखाई दे रही है जिसपे कुछ गाड़ी चल रही है।

इस चित्र में एक किताब की दुकान नज़र आ रही है दुकान के अंदर बहुत सारी किताब कॉपी पेन उपलब्ध है।

मंदिर के बाहर गेट पर लिखा हुआ है गेट नंबर फोर --

एक वैन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दो बाइक भी खड़ी हुई है।

घर के एक दीवाल पर एक भगवान का चित्र लगा हुआ है ।

यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए है जैसे पीओनिर अकेडमी का बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है और भी--

एक फूलों का गुलदस्ता भी नजर आ रहा है एक फूलदानी भी रखी हुई है।

इस चित्र में दो पंछी नजर आ रहे हैं पंछी का रंग है--